बोहोत सारे लोग भी बैठे खड़े नजर आ रहे हैं। एक लड़का पिंक शर्ट पहने हुए है और अपने गले में गमछा डाले हुए है।

एक आंटी साड़ी पहने हुए आलू-प्याज भी खरीद रही हैं।

यह एक डैम है जो की नदी के ऊपर बना हुआ है। नदी का पानी बढ़ने के कारण --

यह एक गन शूटिंग पॉइंट है| जहाँ पर डिफ़्फेरंट डिफ़्फेरंट कलर्स के जैसे कि ब्लू येलो ग्रीन रेड ओरेंज--

यह एक बस स्टॉप ग्राउंड है जहाँ पर दो बसे खड़ी हुई हैं जो कि दोनों हरे रंग की हैं। बस के उस पार एक दीवाल बनी हुई है जो कि क्रीम कलर की है। उसके ऊपर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यह एक मन्दिर के अन्दर व्हाइट कलर और ग्रीन कलर की दीवार है वही मन्दिर में चार मूर्तियां रखी हुई हैं जो की गोल्डन कलर की हैं |

यह एक वेक्सिनेसन सेंटर है। इसकी दीवारों का रंग पिला है। वही एक लड़का सफेद रंग की शर्ट पहैने हुए ब्लेक हैलमेट लगाए हुए --

क्रीम और ब्राउन रंग की हैं वहीं से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है जाते हुए और कुछ हरे भरे पेड़ भी हैं पेड़ के पास एक ब्लेक और व्हाइट रंग की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है|

एक चर्च है जो की ओरेंज और पिंक कलर व्हाइट कलर का दिख रहा है चर्च के सामने कुछ छोटे छोटे गमले भी रखे हुए हैं।

जो वहां पर एक गाय और एक शेर बना हुआ दिखाई दे रहा है सामने एक और बुद्धा की मूर्ति है उनके सामने एक दीया भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक गॉर्डन है जो कि हरी-भरी घास से ढका हुआ हैं। गार्डन में चार-पांच पेड़ भी लगे हुए हैं और बीचो -बीच सफ़ेद और ब्राउन रंग का माउंटेन भी बना हुआ है। ग्राउंड में कही-कहीं सफ़ेद रंग के लैम्प्स भी लगे हुए हैं।

यह एक मंदिर है जहाँ की दीवार सफ़ेद मार्बल से बनायीं हुयी हैं।